यह खेल का मैदान है जहां पे बच्चे अनेक कलर के ड्रेस पहने हुए खेल रहे हैं नीचे जमीन पे हरी-हरी घांस दिखाई दे रही है सामने जाली भी बना हुआ है।

ग्रीन कलर का शर्ट और नीले कलर का पेंट पहना हुआ है शूज भी पहना है पीछे--

ये सामने मेज लगी हुई है मेज के ठीक बगल में--

सामने मैं बहुत सारी मछलियां रखी हुई है।

यहां कमरा है कमरे में दो कुर्सियां रखी गई है एक छोटी एक बड़ी।

लोग इकट्ठा हुए हैं जो लेडीज दोनों है सामने छतरी लगा के--

दूर दूर तक बहुत ऊंची ऊंची इमारतें दिखाई दे रही है चारों तरफ से इमारतें --

लोहे की ग्रिल लगी हुई है इधर भी दो व्यक्ति खड़े हुए हैं।

यहां बहुत सारी मछलियां रखी गई हैं यह मछली मंडी भी हो सकता है बहुत सारे लेडीज जंत लोग इकट्ठा हुए हैं मछली लेने के लिए--

यानी कलर के ड्रेस बने हुए हैं चारों तरफ से मण दिखाई दे रही है।

के सामने मेज है जिस पर व्यक्ति अपना सामान फैलाया हुआ है सामने कुछ बैलून भी लगे हुए हैं।

चारों तरफ से वाइट ही वाइट है दूसरी तरफ ये यलो कलर का--

बोलते हुए ये लोग चली आ रही हैं चारो तरफ से --

सामने मोटरसाइकिल रेड कलर की दिखाई दे रही है।

लाइट भी जल रही है बहुत सारी लाइट जल रही है।

सुकेस जैसा दिखाई दे रहा है नीचे बक्सा भी है बक्से में आइसक्रीम बनाया जाता है।

सजाया गया है जिसमें विभिन्न प्रकार के सामान रखे गए हैं।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

यहां हरी हरी घास दिखाई दे रही है बहुत सारी जमीन पर घांस सूगी हुई है जिस पर बच्चे लोग अपने-अपने खेल रहे हैं।